एक गार्डन है गार्डन में एक राउंड बनाया है और उसमें है हरियाली और एक चार्ट --

यहां पे मेडल है जो बहुत सारे मेडल रखे हुए हैं और एक रैक बनाया हुआ है जो कांच का बनाया हुआ है और मेडल है मेडल अलग-अलग किस्म के हैं अलग-अलग घरों--

यहां मार्केट है मार्केट में लोग जा रहे हैं टूविलर है रिक्शा है यहां पे कचरे गाडा है जागे है और यहां पे है।

सारी जो सारी का दुकान है और यहां पे है।

डोंगर है जो डोंगर में झाड़ है और डोंगर की हरियाली सुखी हुई है और यहां पे--

फ्रूट वाला जो फल फ्रूट बेच रहा है।

के पौ और यहां पे बर्फफुल है जो गिरी हुई है और पहाड़ी है जो वाइट है टोटली वाइट हो गए यहां पे आदमी है जो एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं।